यहाँ बहुत बड़ी घड़ी है दो खम्बे है बहुत बड़े बड़े झाड है और इधर आसमान है बहुत झाड है।

आणि हे ह्या ऑफिस जे मधल काम आहे खुप चांगल काम आहे आणि जे वर्कर्स आहेत एम्प्लॉयर आणि मॅनेजर आहेत ते पण खुप चांगले आहे.